कइ सारे लोग यहाँ से नज़र आ रहे है ना--

आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना जिसमें बदल छाया हुआ है ना।

यह एक मेडिकल शॉप दिखती है ना।

इस फोटो में आसमान दिखता है ना--

मिट्टी मिट्टी दिखती है ना आसमान दिखता है ना--